यह एक बहुत बड़ा नदी है।

नाव पे दो लोग है।

जहां पे सामने बहोत बड़ा शोरूम है।

बहोत सारे लोग हैं। माइक लगा हुआ है सामने।

एक प्रथीमा भी बने हुए हैं।

यह एक मेट्रो स्टेशन है।

यह एक बस स्टैंड हैं।

और एक आदमी ए_टी_म के तरफ जा रहा है।